रोड पे ली गई तस्वीर है जहां एक बाइक पे चार व्यक्ति सवार है ।

यह तस्वीर रावर डेम का है जो बिहार का सबसे बड़ा पूल है यह डेम --